एक ये पुराना राजमहल जैसे लग रहा है इसमें खिड़कियाँ और फिर पोर्च है पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई है और बगल से सीढ़ी है जो रूम में जाती है।

ये एक रूम हैउसमे तीन चार बाइके खड़ी है और सामने कांच की बड़ी-बड़ी खिडकियां है ऐसा लग रहा है जैसे की बाइक की शौरूम है।